चित्र एक समुंद्र का है जहाँ पर तीन बोट्स दिख रहे हैं और पीछे की ओर ग्रास है और--

और पानी दिख रहा है।

और ये चित्र मै बहोत सारे टयरें रखे हुए है और तीन से चार गाड़ी बाइक्स रखी हुई है।

इसमें कुछ सोप वगेरा या शैंपू वगारावगेरा रखी हुई है।